इस होटल में लोग तरह-तरह के खाना खाते हैं।

इसीलिए यहाँ पर आए दिन बहोत भीड़ लगा होता है लोग यहाँ पर --

समझाया जा रहा है की काम कैसे करना।

ये ए.टी.एम. का नाम है सी.यु.बी. ए.टी.एम ।

अच्छी गाड़ी मानी जाती है और यह कम --

प्रचार किया गया है स्वच्छ भारत मिशन का।

यह डांस बेहद ही खूबसूरत है।

यह दिखने में बहुत खूबसूरत है।

अधिक मात्रा में आते हैं और यहाँ पे भीड़ इकठ्ठा करते हैं पैसे निकालते है और जमा --

और ये हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं इस फोटो में --